जी एक बहुत बड़ा कारखाना लग रहा है।

हमारी पहचान है यहाँ पे बिजली के खंभे दिखाई दे रहे है जिसमें बहोत सारे तार लगे हैं ।

फोर व्हीलर गाड़ियों में ही डीज़ल डला जाता है यहाँ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हैं।

यहां एक स्टेज बना हुआ है।

ये दो तीन जगहों से होकर नीचे गिर रहा है यहाँ पे बहोत लोग लोगों की भीड़ है लग रहा है की झरना देखने आये होंगे यहाँ पे जंगल भी दिखाई दे रहे हैं ।

यहाँ पे एक खंडर बना हुआ है जो सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है ये बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे है पौधे दिखाई दे रहे है और यहाँ पे नीला आसमान दिखाई दे रहा हैं।

जगह है उस जगह बहुत सुन्दर लग रही हैं।